यहाँ सामने की और एक मंदिर दिख रहा है मंदिर के ऊपर झंडे लगे हुए हैं दो व्यक्ति सामने की और दिख रहे हैं ऊपर की ओर काला आसमान दिख रहा है सामने की ओर पेड़ भी दिख रहे है।

सामने की और बड़े बड़े दो लिएट्स के खंबे भी दिख रहे है सामने और बाजु मे एक मकान भी दिख रहा है बड़े बड़े भी खड़े हुई हैं।

दो व्यक्ति छोटे-छोटे से जो सामने की और खड़े हुए हैं।

यहाँ सामने की और एक दुकान दिख रही है।

यहाँ सामने की और एक प्लेट में खूब सारी जलेबियाँ रखी हुई है जलेबी के नीचे बड़ी-सी कढ़ाई रखी हुई है कढ़ाई के सामने बड़ी-सी लम्बी-सी दीवार जा रही है।

यहा सामने के और एक बड़ी चॉकलेट की प्लेट रखी हुई है उसके अंदर कई सारी बिस्कट --